अच्छा सा रूम नजर आ रहा है।

जैसा की मैं देख पा रहा हूं कि यह--

जैसा कि मैं देख पा रहा हूं कि यह फोटो --

एक अच्छा सा सुंदर सा मंदिर नजर आ रहा है।

जैसा कि मैं इस फोटो में--

पक्की सड़क के किनारे ली गई है।

काफी सारे कैवन नजर आ रही हैं किसी कॉल सेंटर के--

लोहे के फर्नीचर और --

मुझे किसी कॉलेज की बिल्डिंग की लग रही है।

कमरे से फोटो ली गई है।

किसी दुकान का फ्लेक्स बोर्ड बना हुआ है जोकि दुकान नजर--

बॉटल से पानी पी रहा है।

जैसा कि मैं देख पा रहा हूं कि इस फोटो में मुझे--

किसी घूमने की जगह या किसी पार्क का फोटो लग रहा है।

फोटो मुझे किसी बाइक सर्व्स सर्विस की दुकान की लग रही है।

बनी हुई है जिस नाली में काफी सारा कच --

जैसा की मैं देख पा रहा हूं कि इस फोटो में मुझे--